यहां पर कुछ खेलने के सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक होटल का चित्र है।

रिसेप्शन के ऊपर बहोत सारे फूलों और पत्ते से सजाया गया है।

यह एक झरना का चित्र है जिसके चारों तरफ पुरुष और महिलाएं खड़े हुए नजर आ रहे हैं।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

सामने में एक घर भी न दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बिस्तर भी दिखाई दे रहा है जिसमें सफ़ेद रंग की चादर बिछाई गई है।

यहां पर बहोत सारे लाइटे भी लगे हुए हैं।

यह एक रसोई घर के सामग्री का दुकान का चित्र है।

और कपबोर्ड में कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं।

और यहां पर पहाड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ गाड़ियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह फूलों और पर्दों से सजाया गया है।

जैसे आम अनार नारंगी केले अ खजूर इत्यादि।

और यहां पर कुछ झंडे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक गुफा का चित्र है।

यह एक होटल राज रेस्टोरेंट का चित्र है।

यहां पर दो लड़के चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ फ्रॉक कुछ साड़ियां कुछ लहंगे कुछ टी शर्ट कुछ शर्ट कुछ जीन्स भी लगे हुए हैं।

यहां पर बस भी है जो पानी में डूब गया है।

यहां पर लड़कियां और लड़के अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर तीन ए_सी भी लगा दिखाई दे रही है।

यहां पर जिम के सारे चीजें रखे हुए हैं जैसे बॉक्सिंग डंबल इत्यादि।

यहां पर लाइटे और फैन भी लगे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

क्लीनिक के सामने छोटा सा घर भी दिखाई दे रहा है।

यह एक शिवजी का मंदिर है।

यहां का आसमान बहोत ही अच्छा है।

यहां कागज के बहुत सारे चित्र हाथों से बनाए गए हैं।

यह एक स्मार्ट बोर्ड रूम के बाहर का चित्र है।

और कुछ पूजा करते हुए दिख भी दिखाई दे रहे हैं।

आसपास छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

जैसी आटा चावल चीनी साबुन सर्फ इत्यादि।